इस केक के ऊपर हार्ट्स के डिजाइनस बनाए हुए हैं।

यहां पे सीलिंग और पिलर को वाइट कलर से पेंट किए गए हैं।

ये दुकान के अंदर एक सीट रखा हुआ है जिसका कलर व्हाइट और रेड है।

इस जगह का गेट का कलर येलो है।

यहां पर थोड़ी दूरी पर टीना वाला घर है।

वहां इंसानों के स्वागत के लिए लाल कलर की कारपेट बिछाए गए हैं।

यहां सजावट के लिए गेट पर बहोत सारे फ्लावर्स लगाए गए हैं अलग अलग रंग के।

यहां एक आदमी बैठा हुआ है जिसके पीछे एक लंबा सा ब्रिज है।

यहां पर सारे बच्चे ने पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहां कार वॉश के उस पीछे पर बहुत सारे जंगल और घास लोग है।

यहां पर पर्दे पर्पल कलर के लगाए गए हैं खिड़की पर।

इस स्टेज के ऊपर टेबल पर एक लाल कलर के कपड़े बिछाए गए हैं।

इस जगह के टीना के नीचे के लोहे ब्लू कलर के हैं।

वही येलो कलर की बिल्डिंग के आगे एक सफेद कलर की बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे खिड़कियां भी है जिसके टिने के रंग लाल है।

यहां पर ब्लैक टेबल के ऊपर एक पानी बोतल रखा हुआ है।

यहां पर दाहिने की ओर दो सफेद गाड़िया पार्क किए गए है।

इस जगह के सीलिंग को व्हाइट और रेड कलर से पेंट किया गया है।

आ दाहिने की तरफ एक पानी पाइप है जिसका रंग ब्लू और ग्रे है।

वहां पर ए_टी_एम के बाहर ब्लैक कलर की स्कूटी पार्क किए गए हैं।

यहां बड़े से पोस्टर पर पटना लिखा हुआ है।

यहां से कुछ ही दूरी पर एक वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे खिड़कियां भी हैं।